एह हमारा इलाका का एक मार्केट है। एह मार्केट बोहोत बड़ा है। इस मार्केट के अंदर बोहोत सारे छोटे-छोटे --

रंगोली बना रहा है। एह रंगोली बहुत ही सुंदर है। बहोत जल्दी एह रंगोली कम्पलीट हो जायेगा। दस लड़की लोग इकोट्टा होकर इ रंगोली बना रहा है।

इस मिठाई का दुकान में ताजा-ताजा मिठाई सेल होता है। यहां पर बीस तरह का मिठाई दुकान में सजा हुआ है। मिठाई बनाने के लिए --

एह हमारे इलाके का एक केमिस्ट्री लैब है। एह लैब बहुत बड़ा है। इस लैब के अंदर दो टीचर हमेशा रहता है। यहाँ पर स्टूडेंट को क्रेमिस्ट्री का पैकट्रिकल --

ये हमारे इलाका का एक मंदिर है। इस मंदिर के बाहर लोग मोमबत्तियां जलाता है। यहाँ पर मोमबत्ती जलाने के लिए बहोत सारे स्तंभ भी है।

एह हमारा इलाका का एक वाटरपार्क है। ऐ वाटरपार्क बहोत ही बड़ा है। इस वाटरपार्क के अंदर बहुत सारे वाटर राइड भी है।

ही कम जल आता है। इसलिए इस डैम में जल भी सुख जाता है। इस डैम के अंदर मिट्टी का दिख जाता है।